हरा भरा होता है और ये शहरों से बोहोत दूर होती है गाँव के पास हो सकती है। ये एक तरह का जंगल भी कह सकते हैं। यहाँ पे जंगली जानवर भी हमें देखने को मिल सकते हैं तो हमें ध्यान रखना --

एक टाइप की ये एक्सर्साइज़ होती है। इसक हम योगा भी कहते हैं। योगा जैसे कि इंडिया में बोहत ज्यादा चलती भी है। भारत में बोहत प्रसिद्ध है। लोक सुबह-सुबह योगा करना पसंद --

ऐसे में काफी जगह देखने को मिल जाएंगे आमतौर पर कॉलेज है। जहाँ पर जो छात्र होते हैं वह अपनी उच्च शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज स्टार्ट होता है तो वहीं पे --

काफी जगह हमे देखने को मिल जाएगा। मोस्टली हमे देखने को मिलता भी है।

ऐसा नहीं है की ऐसे यह बहुत रेयर है भारत मे तो बहुत अलग-अलग प्रकार के बहुत ही अच्छे-अच्छे सुंदर-सुंदर प्राचीन मंदिर है।

इत्ता बड़ा पैमाने में बना हुआ है तो इतने बड़े एरिया में बना हुआ है और पार्क भी दे रखा है तो यह किसी न किसी चीज़ का ऑफिस होगा या तो कोई पार्क इलाका या कोई --